और यहां पर पेड़ भी लगे हुए हैं।

और कुछ बहुत से पेड़ पौधे भी है।

और पीछे बहु मेज भी है।

और इन पानी की बोतला भी है।

और पीछे भी बलफ लगे है।

और कुछ कापी किताब भी दी है।

यह एक इनवर्टर और बैटरी पंखे की दुकान है।